ये एक सैलून है जहां पर बहोत सारे समान रखे हुए हैं बाल कटाने --

हाथ में डंडा लिया है। जंगल में खड़ा है नीचे पार्क में बहोत सारा झूला है।